आगे बहुत सारे दो जो देखते हैं और आगे पूल है| बहुत सारे वहाईट कलर के ड्रेस मे हैं जो भाषण दे रहे हैं| और एक बजाने वाले हैं जो बजा--

साइड में बाइक रिपेयरिंग करने के बाद उसको साफ किया जाता है और साइड में बहुत सारा वृक्ष लगा हुआ है बी पलस्तर है साइड में एक व्यक्ति खड़े हैं जो बाइक के एक साइड में ---

यह एक प्रकार का बैंक है होटल गेट वे कर्नाटका ये होटल है जिसके अन्दर गाड़ी पार्किंग नीचे किया जाता है।

पैर में बैंडेज किया हुआ है जो चोट लगने के कारण टूट गया है और साइड में बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

इधर झरना टाइप का फूल का झरना बना हुआ है जिसमें फूल का और झरना टाइप का पानी गिर रहा है।

चार आदमी बैठे हुए है। इसमे एक साइड से भाषण दे रहे है। ये एक मट लग रहा है।

व्हाइट कलर का वॉल है। नीचे सीढ़ी लगा हुआ है। साइड में टेबुल लगा हुआ है।